ये कच्चा रोड दिखाई दे रहा है आस पास घर बने हुए है और छोटे छोटे पहाड़ है यहाँ पे पाइप पड़ा है।

ये एक हॉस्पिटल है काफी पेसन्ट बेठे हुए है यहाँ पे यहाँ पे एक केबिन बना हुआ है।

एन्ड पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं वेटरस भी हैं। यहाँ फ्रंट में वाइट कलर के सोफे रखे हुए हैं और पीछे चेयर रखी --

इसका जो साइड का फ़्लोर है वो काँच का बना हुआ है व्हाइट कलर के थर्मोकोल के ऊपर ये रखा हुआ है।

फ्लोर भी व्हाइट लग रहा है यहाँ पे । ब्लैक कलर की कार पार्क है और वहाँ पे कुछ कूलर रखा हुआ है। सामने वो वॉल भी व्हाइट --

एंड सामने अ ईलैक्टोसिटी का वायर डले हुए है यहां पर फ्लोर रेड कलर का दिखाई दे--

यहाँ दो गाड़ियां खड़ी हुई है और सीमेंटडरोड है सामने पहाड़ है झाड़िया है पेड़-पौधे लगे है सामने। --

वह है। यहाँ पे हीमेन का पोस्टर लगा हुआ है सामने और इसकी छत बनी --

वो भी केले के पत्ते के ऊपर रखी हुईं --

ऊपर सीलिंग पे हा-आ-ब्लैक ब्लैक सा कलर नजर आ रहे है ।